चार फोटो बने है बाहर एक कुत्ता बाहर एक कुता बैठा है पानी गिर रहा था।

यहां पर बहुत सारे लोग हाथ जोड़कर करे हुए है बहुत थोड़ा टूटा-फूटा घर हैगा बहुत सारे पेड़ हेेंगे कुछ लोग बहोत पब्लिक है बहुत सारे पेड़ भी हेेंगै--